यहां पे नीचे में फर्श का कलर काला दिखाई दे रहा है।

यहां पे ढेर सारा बंजर जमीन भी दिखाई दे रहा है।

यह एक तालाब का दृश्य है जहां पे सामने में ढेर सारा चट्टान है और बीच से पानी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा--

यह एक रोड का दृश्य है जहां पे सामने से एक रोड गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहां पर हर एक मंदिर के बीच में एक लंबा और चौड़ा चौड़ा पिलर बनाया हुआ है।

यहां पे इस गार्डन में रोड भी बनाया हुआ है।

यहां पे इस महिला के बगल में एक बड़ा सा लैंप भी बना हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य जहां पे ढेर सारा सामान रखा हुआ है।

बाल्टी बच्चों के खिलौने का सामान ढेर सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य जिसके दोनों साइड में घर और दुकान वगैरा बने हुए हैं।

यह एक रोड का दृश्य जहां पे एक लड़का गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर में ब्लू कलर का पेंट किया गया है और बीच बीच में डार्क ब्लू का टेपिंग भी किया हुआ है।

सामने में हत्ता भी बनाया हुआ है और हत्ता के पीछे में ढेर सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक प्रोग्राम का दृश्य है जहां पे एक बच्चा है जोकि कुछ स्टेज पे भाषण दे रहा--

उपर में एक काला कलर का पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पे ढेर सारा मछली दिखाई दे रहा है।

अंदर में मशीन भी रखा हुआ है जो की ए_टी_एम मशीन है।